यह लोग चट्टानों पर बैठे हुए हैं।

चौड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ ग्रीन कलर की चादरे दिखाई दे रही है।

जो कि झुले पर बैठी हुई है।

इसके चेहरे पर ब्लर लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर एक मेला लगा हुआ दिख रहा है।

एक पर एक शॉप दिखाई दे रही है।

कुछ सिंक दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लाइट्स लगी हुई दिख रही है।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

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लाइट्स लगी हुई दिख रही है पलाई लगी हुई दिख रही है कुछ दरवाजे दिख रहे है।

यहां पर कुछ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।